जिसका हाथ दिखाई दे रहा है जो कि कम कर रहा है।

यहां पर पक्ष लगी हुई है और आगे की और एक गाड़ी खड़ी --

सामने की और विंडो बनी है जो की ओपन है।

जिसके ऊपर मिलिनिआ इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है।

जो लास्ट फ़ोल फ्लोर पर सामने के वेस्ट में बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनी है जो की सेमांटिक टाइल्स वाली है।

रोड के राइट साइड में काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

उसके बीच-बीच में जो पिल्लर्स टाइप के बनाए गए हैं डिजाइनर वो वाइट कलर से हैं और उसमें स्टील लगा हुआ है।

उसके आगे की ओर एक ब्लू बोर्ड लगा है जो की डोमिनोज का है।

पीछे की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शिवजी की प्रतिमा बनी हुई है।

और काफी स्टेच्यू बने हुए हैं यहां पर अलग-अलग मेल्स के स्टेच्यू बने उनके हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट है।

और ऊपर तक घर बना हुआ जिसमें ऊपर की और एक पेड़ दिखाई दे रहा है हल्का सा जिसकी पत्तियाँ दिखाई दे रही है।

और पेड़ की परछाई उसे तालाब के अंदर दिखाई दे रही है।